सामने में एक नल है नल है पानी भरने के लिए बकेट रखी हुई है आसमानी कलर की डस्ट बिन --

बड़ा सा कछुआ हैं और हरी घास के ऊपर ये चल रहा हैं बैठा हुआ हैं बहुत सारा हरा-हरा दिखाई दे रहा हैं बड़ा सा मैदान हैं। जिसका ऊपर ये कछुआ बैठा है|